काफी पुराना मंदिर है इसलिए इसकी मान्यता काफी है बहुत ज्यादा मान्यता है।

यह जिम में यूज होने वाला डम्बलस है जिससे हम अपनी मसल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिम में काफी प्रैक्टिकल होते हैं। इन मसल्स का हम --

को बहुत लोग प्यार करते हैं। चाय से बहुत ज्यादा लगाव होता है किसी किसी को चाय हमारे लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है।